जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बड़ा सा--

यहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें कुछ लोग है और यहां पर सूरज निकला हुआ है और कुछ दरख्त भी है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक स्कूल है जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और यहां पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है ।

जो केका कांच में रखे हुए है और यहां पर एक--

और अंदर भी बहुत सारे कलर के डिब्बे हैं और एक कुर्सी भी रखी हुई है ।

यहां पर बहुत सारे डब्बे रखे हुए है ।

और यहां पर एक काले कलर का बड़ा सा बैग है ।

यहां पर एक दुकान है जिसमें बैगा --

और यहां पर एक कुर्सी भी है जो काले कलर की--

यहां पर एक सुरंग में दो लोग फंसे हुए हैं और यहां पर बहुत बड़े-बड़े फतरे भी हैं।

यहां पर दो घर झोपड़ियां हैं जो पिंक कलर की है और यहां पर कुछ दरख्त भी है ।

यहां पर काले कलर की कुर्तियां रखी हुई है और एक काले कलर का टेबल भी है ।

और यहां पर हरी-हरी घांसे भी हैं और कुछ पौधे भी है ।

दीवार पर कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में और एक कार है।

एक गुड़िया भी है जिसको कपड़े पहनाए हुए है ।

उपर एक पान डब्बा है और चाय की दुकान है जिस पर यू_पी_आई बना हुआ है और यहां पर दो लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर एक गैराज है जिसमें का--

और यहां पर कुछ सामान भी रखे हुए है ।

बहुत सारी बुलट गाड़ियां हैं पुरानी--

इस ऑफिस में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं जो काले कलर की और चॉकलेट कलर की--

ये एक योगा क्लास है जिसमें कलर कलर की चटाइयां बिछई हुई है और तकीये रखी है ।

यहां पर एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड हैं।

यहाँ पर एक पंखा भी उतरा हुआ है ए_सी है कूलर है वॉशिंग मशीन है मोटरे भी है।

एक पीले कलर की ये चटाई भी है जो --

एक अंकल एक बुक लेकर खड़े हुए हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ।

जिस पर ए_टी_एम इंडियन पोस्ट लिखा हुआ है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक स्कूल है।

जहां पर कांच में ड्रेस रखी हुई--

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जहां पर एक आदमी है और एक औरत बैठी हुई है यहां पर बड़े-बड़े सोफे हैं जिनका कलर लाल और काला है ।

और यहां पर सजावट है फूगों से करी हुई है जो पीले और नीले हैं और फूल भी लगे हुए है ।

इस दुकान में बहुत सारी पाइपें रखी हुई है ।

और बहोत सारे डब्बे है कलर कलर की पाइपे है सफेद कलर की नीले कलर की और गुलाबी कलर की--

केक का कलर नीला और सफेद और गुलाबी है।

यहां पर एक फोन की दुकान है जिसके ऊपर--

यहां पर दो कुर्सियां रखी हुई है चॉकलेटी कलर की--

और बाहर भी एक टेबल और दो कुर्चियां रखी हुई है ।

ये एक बस स्टैंड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और कुछ बसें भी खड़ी हुई हैं और एक आदमी--

यहां पर एक क्लास है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां बैठी हुई है ।

और एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं एक सफेद कलर का बोर्ड है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर एक सीडी भी है जो नीले कलर की--

यहां पर पूजा का सामान रखा हुआ है ।

यहां पर एक पहाड़ है जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे हैं एक सबसे ऊपर जाकर खड़ा हुआ है और यहां पर कुछ दरख्त भी है।

यहां पर बहुत सारी कांचे हैं जिन पर कु --

और एक कुर्सी है जो चॉकलेट कलर की है ।

फिर यहां पर ऊपर एक जिम भी है जिसका पोस्टर लगा हुआ हैं।

खड़ी हुई है और एक गाड़ी है और एक साइकल --

बहुत सारे कंकरे भी है और एक मशीन है ।

और यहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है ।

यहां पर नंबर बी दिया हुआ है दो--

यहां पर दो बसे खड़ी हुई हैं सफेद कलर की और एक कार भी है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर कुछ लोग ठहरे हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहां पर कुछ लड़कियां भी है जिसने पोस्टर पकड़ा हुआ है।

इसके ऊपर एक नंबर भी है और इंग्लिश में कुछ लिखा --

यहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर बहुत सारे बैग रखे हुए हैं और यहां पर बहुत सारे बच्चे भी हैं जो खेल रहे हैं।

यहां पर एक शोरूम है गाड़ियों की जहां पर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है और यहां पर एक बड़ा सा पोस्टर है जिस पर बजाज लिखा हुआ हैं।